आदमी अपने डोले दिखा रहा है व्यायाम का साधन रखे हुए है एक आईना है। एक पोस्टर लगा हुआ है।

बाजू मे व्यायाम करने के साहित्य है और उसके पीछे एक और आदमी खड़ा हुआ है।

तारे किताबे रखी हुई है पेन है आदमी बैठा है और पेन्सिले रंग है।